प्रोडक्टस रखे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ एक व्यक्ति खड़ा हैं जो हाकी उम नीले रंग की शर्ट --

एक मैदान है इसके सामने एक खेत है और यहाँ पे जाली लगी है लकड़िये है और एक --

यह एक मोटर गैराज की तस्वीर है। जहाँ पर अ ह इंशाअल्लाह लिखा हुआ एक पोस्टर लगा है और यहाँ गेंदो की फूलों की माला से इसे सजाया गया --

यह एक उम उम जंगल की तस्वीर है जहा पर काफी लम्बे लम्बे पेड़ नज़र आ रहे है।

यह एक किसी किले की तस्वीर है जहाँं पर काफी सारी चेयर रखी हुई नजर आ रहीं हैं और यहाँं एक चर्च जैसा नजर आ रहा है। यहाँ एक पेड़ लगा हुआ --